यह तस्वीर ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल की है जो की एफलीऐटिड टू सी_बी_एस_सी न्यू दिल्ली से है।

और इस काफी बड़ा स्कूल है और स्कूल अभी बंद नजर आ रहा है।

इसमें बहुत सारा टेबल को सजाया दिख रहा है और सभी टेबल पर प्लेट टिशू और ग्लास नजर आ रहा है।